ये एक शादी का हॉल है और इसमें कई सारी लाइटें लगी हुई हैं।

और एक व्यक्ति एक मछली को काट रहा है और अगल बगल कई सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं और एक व्यक्ति --

ये एक ग्राउंड एक गार्डेन का चित्र है और इस गार्डेन में कई सारे हरे-भरे पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं।

ये एक फूल ये एक गार्डन का चित्र है और इस गार्डन के अगल बगल कई सारे हरे भरे पेड़ पौधे भी लगे हुए है और इस गार्डन में पानी की बॉल चल रही है।

और अगल बगल कई सारे हरे भरे पेड़ पौधे भी लगे हुए है और इस ग्राउंड में शाम के टाइम कई सारे लोग टहलने आते --

और इस गार्डन में कई सारे हरे भरे पेड़ पौधे भी लगे हुए है और इस गार्डन में कई सारे लोग --

अगल बगल कई सारी पेड़ पौधे की पत्तियां बहुत छोटी-छोटी हरी-हरी घास भी लगी हुई है। कुछ लोग इस ग्राउंड में घूमने आते है।